इस चित्र में थाली रखी हुई दिखाई दे रही है जिसमे लड्डू रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में प्लेट लगी हुई दिखाई दे रही हैं| सब्जी नमक जग और कई सारे सामान रक्खे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरियाली दिखाई दे रही है पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं |

इस चित्र में बादल दिखाई दे रहे हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं चट्टानें दिखाई दे रहे हैं कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।